पौधा च दिखेण लग्युं गमला छ दिखेण लग्यू पंखा च लग्यू लाइट च लगी यख मा जी गेट भी छ एक दिखेण लग्यू।